और शायद वो सजावट कर रहे हैं रोड है।

उसपे लाइट्स लगी हुयी हैं और एक सुन्दर से साइकिल सजा के रखी हुई है।

कॉलेज ड्रेस में और सबके हाथों में बाइक्स है।

इमेज मैं पूरव मध्य रेलवे हाजीपुर जंक्शन दिखाया गया हैं यहाँ पर।

नदी के साइड एरिया में--

घर के आजूबाजू पूरी ग्रील लगी हुई है घर यहाँ ग्रीन कलर का दिख रहा है--

गोदाम में कुछ बोरियां रखी गई है अनाज से भरी हुई वहाँ पर एक--

के साथ साथ सुन्दर सजावटी वस्तुए भी नज़र आ रही हैं।

कुछ स्पीच कुछ बता रहा है।

स्पीकर्स रखे हुई हैं ओर कुछ भगवानों की तस्वीरें लगी हुई हैं।

और टीचर्स लोग यहाँ टेस्टी नमकीन खरीद रहे है।

यहाँ रूम बहुत ही पॉश क्लीन नज़र आ रहा है।